इस पर एक शटर रखा हुआ है।

और पीछे कुछ आदमी भी टहल रहे है।

को एक आदमी लाइट ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने चला जा रहा है।

तो कुछ कोर्ट पर खड़े हुए हैं तो कुछ खेल रहे हैं।

तो उसके चारों तरफ कुछ बच्चे इधर उधर कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

यह एक पिक्चर है जिसमें की कुछ बच्चे--

यह पेड़ कुछ आकार में छोटे तो कुछ बड़े हैं तो कुछ अलग अलग प्रकार के हैं जो की बहोत ज्यादा सुंदर--

लगा हुआ है और पीछे भी कुछ विशाल पेड़ भी है।

पीछे से यह एक घर सा दिख रहा है जिसका रंग सफेद है।

कुछ आदमी एवं औरतें भी खड़ी हुई है।

खड़े हुए हैं और उसी के बराबर में कुछ पीछे आदमी--

यह एक पिक्चर है जिसमें की कांच के एक--